देखिए ये होटल दिख रही है यहां पर खाने की प्लेट रखी हुई है एक लेडिस भी दिख रही है लेडिस खाना खा रही है।

चेयर वगैरह रखी हुई है फैन भी लगे हुए है।

और दो आदमी बैठे हुए हैं दो तीन लोग खड़े हैं।

बैठा हुआ है दो तीन लोग खड़े हुए हैं बाजू में लेडिस खड़ी है उसके थोड़ी दूर पर लेडिस बै--

ये देखिए यहां पर मोबाइल की दुकान है बहुत सारे बॉक्स में शायद मोबाइल रखा हुआ है।